और हर तरह का कपड़ा है यहां पे लाइट लगा हुआ है।

यह एक मां अष्टमी मंदिर है यहां पे घंटी लगा हुआ है।

बाहर में फील्ड है फील्ड में एक झंडा फहराने का बनाया हुआ है।

इसके आगे एक दुकान है इसमें बहुत बड़ा बड़ा अलमारी बना हुआ है इसके बाहर बाइक खड़ा हुआ है।

यह एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में शीशे का खिड़की लगा हुआ है।

ए है जेंट्स भी हैं लेडीज भी हैं।

यह एक रूम है रूम में एक लैपटॉप है।

हॉकी है बैट बॉल है बहुत सारे रंग बिरंगे गिफ्ट हैं।